यहाँ पर कि एक के ऊपर एक डब्बे के ऊपर एक मछली रखी हुई है और बहोत सारी साइड में मछलियाँ रखी हुई हैं।

इस इमेज में हमें एक घर को दिखाया गया है दीवाल पे जो के मेमोरियल महाविद्यालय है कौ स्कूल है।

इस इमेज में हमें जानवरों को दिखाया जा रहा है जो कि एक पिंजरे में है।

इस इमेज में हमे एक शादी का सीन को दिखाया जा रहा है जिसमे की पीछे में कुछ सजावट भी की गई है डिजाइन में ऊपर से कुछ --

इस इमेज में हमे बहुत सारी बिल्डिंग को दिखाया जा रहा है और एक हाइवे है वो भी दिखाया जा रहा है।

इस इमेज में हमें एक आधार इम्प्लोय्मेंट अप्डेटेशन अपडेशन सेंटर पूरा दिखाया जा रहा है।

आगे में कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हैं और ऊपर स्टेज पे भी दो लोग जो हैं बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े भी हैं।

और वाइट कलर का उनके लिए वो बना हुआ है ऊपर साइड से और नीचे में भी रखा हुआ है उनका स्टेचू बना हुआ है गोल्डन कलर का|

इस इमेज मे हमें भगवान बुद्ध को दिखाया जा रहा है जोकी एक इमेज बना हुआ है दीवाल पे बना के उसे चिपकाया हुआ है।

इस इमेज में हमें भगवान बुद्ध को दिखाया जा रहा है जिसमें पीले कलर की पर्दे हैं| ऊपर में से लाइट आ रही है वाइट कलर की ऊपर से थोड़ी बनाई हुई है|

और आगे में कुछ दीये वगैराह भी रखे हुए हैं और अगरबत्ती भी और एक--

इस इमेज में हमें एक ग्राउंड को दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारी पेड़े और घास-फूस भी है और बगल में कुछ बिल्डिंग्स है जिनमें खिड़कियां है और सामने में भी घर है।

आगे में टेबल पर कुछ बुक्स रखे हुए है पीछे में एक वाइट कलर बोर्ड भी रखा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है और बीच में कुछ कैलकुलेटर्स भी रखे हुए है।